यहां पे नीले कलर का पर्दा लगा हुआ है यहां पे दरवाजा लगाया हुआ है।

यह एक दुकान है जिसका नाम है शर्मा ऑटो वर्क --

ये खाने की चीजे रखी हुई अच्छी चॉकलेट --

स्टॉल भी खुली हुई है जोकि खाने की है यहां पे गेम खेलने की भी दुकानें खुली हुई है।

यहां पे एक घर भी बना हुआ है जो कि बहुत बड़ा है वो वाइट कलर का है वहां पे पेड़ पौधे भी उग रहे हैं और वहां पे बहुत सारी --

इनमें बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है।

यहां पे ऐ_सी भी लगा हुआ है यहां पे लाइटें भी लगी हुई है और यहां पे व्हाइट कलर का पेंट किया गया है।

पीले कलर के उसके ऊपर काले कलर के टीन--

और यहां पे बहोत सारे लोग रेहते हैं।

यहां पे एक मॉल है जिसमें बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं लेडिज के जेंट्स के बच्चों के।

बोया हुआ है यहां पे हरी हरी घासें भी उग रही है।

यहाँ पे एक आदमी दूध लेकर जा रहा हैं यहाँ पे बहोत सारे लेडी --

ये दवाइयां रखी हुई मेज पर एक कैंची एक पेन --

यह एक सड़क की तस्वीर है यहां पे टेंपू खड़ा है जो कि काले कलर का है।

गिलासी रखी हुई है यहां पर कुछ पर्चे भी रखी हुई है।

यहां पे बहोत छोटे छोटे घर बने हुए हैं।

फोटो खिंचवा रहा है यहां से नदिया भी जा रही है।

और यहाँ पे ए_सी भीं लगा हुआ हैं लाईटें भीं लगी हुई हैं।

यहां पे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं यहां पे दुकान में भी लगी हुई हैं यहां पे नीले कलर के पर्दे लगाए गए हैं।

सामने एक बिजली का खंबा हैं।

यहां पे सीढ़ियां लगाई गई यहां पे घासे उग रही है।

यहाँ पे घर बना हुआ है।

यह एक मंदिर है यहां पे बहोत सारी--

यहां पे रंग बिरंगी लाइटे भी लगाई गई है।

इसे बहुत ही ज्यादा डिजाइनर तरीके से बनवाया गया है।

यहां पे एक खड़ा हुआ है।

डब्बे में यहां पे बहोत सारे आदमी और लेडिस भी हैं।

ए_टी_एम में यहां पे बहुत सारे लेडिज और आदमी खड़े हुए हैं।